एक मैदान है मैदान मे बहुत सारे खेत बने हुए हैं खेतों मे कुछ खेतों मे पानी भरा है कुछ खेतों मे पानी नहीं भरा--

पंद्रह से बीस फैन लगे हुए हैं दो से तीन लोग उस टेबल मे बैठे हुए दिखाई दे--

एक मैदान हैं एक मंदिर हैं इसमें काफी सारे लोग खड़े हुए हैं कुछ लोग माथे पे तिलक लगाये हुए हैं कुछ लोग मोबाइल पकड़े हुए हैं।

किरीम रखी हुई है और शैम्पू रखे हुए हैं क्रीम रखे हुए हैं और काफी सारे पैकेट दिखाई दे रहे हैंरखे--

एक मैदान है मैदान में चारों और घास लगी हुई है और उसे घास में एक बकरी बैठी है।

जो बहुत सारे कलर से बना हुआ है और एक वीडियो रिकार्डिंग करने वाली मशीन रखी हुई है और गुलाबी सफ़ेद और नीले परदे लगे--

एक राधाकृष्ण की मूर्ति है जिसमें कृष्ण जी राधा जी के साथ--

घास तीन पार्ट मे घाँस लगी हुई है बीच में हल्का पानी दिखाई दे रहा हैं और ऊपर एक पट्टी बनी हुई दिखाई दे रही है।

--और उसने चौड़े से आकार के पत्थर रखे हुए है।

रोड है और रोड में दो भैस चल रही है।

जिसमे एक लड़की और लड़का दिख रहे हैं जो हाथों को पकड़े हुए है और प्रजेक्टर के बाहर लड़का कुछ देख रहा है।